मिटटी और ईंटे पड़ी हुई है और यहाँ पर सीमेंट को मिक्स करने वाली--

यहाँ से बोहोत सारी बिल्डींगे दिखाई दे रही है मकान दिख रहै है।

जिसमें खिड़की और रैलिंग लगी हुई है सामने एक आंटी हैं जिन्होंने नीला --

यहाँ पे एक कॉफी मशीन रखी है।

यहाँ पर खेत बने हुए हैं खेतों में पानी और फसल लगी है जो --

और पानी के जो फौहारे है वो काफी ऊपर तक जा रहे है।

एक बुक रखी है एक क्रिकेट के बैग रखे है जो--

लोहे की जाली लगी हुई है लाइट का खम्भा दिखाई दे रहा है।

अगरबत्ती रखी हुई है जैसे मोंगरे की है गुलाब की अगरबत्ती है।